खम्बो से थोड़ी दूरी पर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बड़ा सा मेला भरा हुआ है मेले मे बहुत सारे लोग उपस्थित है मेले मे दो बड़े से झूले लगे हुए है।

बिल्डिंग के ऊपर बड़ी सी कांच की एक खिड़की लगी हुई है।

बड़ा सा हरा भरा पार्क है पार्क में बच्चों के लिए छोटे छोटे से झूले और बैठने की जगह बनी हुई है।

टेम्पू पर सफेद और पीले रंग का पैंट हुआ है।

टेम्पू से थोड़ी दूरी पर कुछ दो बड़े से लाइट के टावर लगे है और कुछ हरे भरे पेड़ पौधे लगे है।

बडा सा मैदान बना हुआ है मैदान में कुछ हरी भरी सी घास लगी हुई है मैदान के बगल मै लोहे की बाउंड्री बनी है।

और कुछ बाल बनाने के क्रीम और समान रखे हुए है हॉल मे एक पंखा चल रहा है।

उस डेम चारो तरफ दीवार की बाउंड्री बनी हुई है।

बीचों बीच एक काले रंग की कुर्सी रखी है उस कुर्सी के सामने एक बड़ा सा कांच रखा हुआ है।

दुकान की ऊपर की छत पर एक बड़ी सी लाइट लगि हुई है।

उस लंबी सी पोस्टर पर स्टोर का नाम लिखा है स्टोर के अंदर और बाहर बहुत सारा सामान रखा है।